बहोत सारे काम किये गए है यह साड़ी सभी औरत फंक्शन में अच्छी अच्छी साड़ियां पहनती है।

काफी ऊँचाई में हैं यह सरकारी भवन में सब ये आदमी --

कतले है यह मछली काफी खूबसूरत दिखाई दे रहे है यह मछली --

एक दुकान है यह कपड़े की दुकान बहुत बड़ी है यह कपड़े की दुकान में --

यह फील्ड में चारो ओर से बहुत बड़ी-बड़ी पौधे भी --

यह फील्ड मे सभी आदमी घूमने के लिए आते है।